यहां पे ये लाल कलर की रिक्शा खड़ी हुई है।

यहां पे एक शोरूम है।

बाल कटवाने वाले भी बैठे हुए हैं और काटने वाले भी काट रहे हैं।

इसमें परांठा भी रखा हुआ है।

यहां पे ये बड़ी सी टेबिल लगी हुई है।

यहां पे एक बहुत बड़ा कमरा है।

अउर दीवारों पे कुछ बहोत सा लिखा हुआ है।

इनपे ब्राउन कलर का गद्दा लगा हुआ है।

और डाइल नैनो एच_पी भी लिखा हुआ है बाहर बोर्ड पे।

हरे रंग के मैट बिछे हुए है।

और कुछ छत में पंखे भी लगे हुए हैं लाइटें भी लगी है।

यह एक छोटा सा रेस्टोरेंट है।

बहुत सामान भी रखा हुआ है। कोंटर भी रखा हुआ है।

और कुछ पेड़ भी खड़े हुए हैं।

नीचे मैट भी पड़ी हुई है।

और इसमें बहोत सारे सोफे भी पड़े हुए हैं।

कॉपी कलर का गद्दा भी लगा हुआ है।

यहां पे ये बड़ा सा चित्र उतरा हुआ है आदमी का।

दीवारों पे टाइल भी लगी हुई है।

यह एक बहोत बड़ा जंगल है।

लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है।

यहां पे बहुत डेकोरेशन की लाइटें भी लगी हुई हैं।

यह आदमी भी बैठा हुआ है।